और ऊपर कुछ आदमी चढ़ रहे हैं और छोटे छोटे पेड़ लगे हुए कुछ बेले भी लगी हुई है पहाड़--

नेसे एक दूध जैसा सफ़ेद झरना बैह रहा है और बीच वाले पहाड़ का रंग चाॅकलेटी कलर जैसा लग रहा है नीचे पानी का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ लोग ढोल और बाजा बजा रहे हैं कुछ ने क्रीम कलर की शर्ट और धोती पहनी हुई है किसीने स्लेटी कलर की शर्ट और धोती पहनी हैं किसीने--

सामने कुछ लोग जिम कर रहे है कुछ लोग खड़े है कुछ लोग आधे बैठे हुए है आधे खड़े हुए है डम्बल डले हुए है पीछे रस्सिया डली हुई है काले कलर की--

टाइगर सड़क पर सो रहा हैं और बगल में तालाब हैं और फूल भी लगे हुए हैं। पेड़ भी लगे हुए हैं। पेड़ की जालियाँ--

पहने हुए है। नाव का रंग सफेद है। और जीने जहाज से यहाँ एक बोट लगा हुआ है। इसका चॉकलेट --

सामने एक घर बना हुआ है जिसका जिस जिस जिसका रंग सफ़ेद और गुलाबी है।

और एक बाउंडरी बनी हुई है उसपे सलिये लगे हुये है और बाउंडरी का रंग भी सफेद है नीचेसे हरा है सामने कुछ बाइके और स्कूटी पार्किंग मे लगी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ सामने बोर्ड भी लगा --

सामने कुछ लोग योगा कर रहे हैं कुछ लोगो ने नीले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई हैं कुछो ने हाथ में ग्लोव्स भी पहनी हुई हैं सभी के निचे नीली चटाई और--

सामने क्रैट में मछलियाँ रखी हुई हैं मछलियों के कुछ के खून आ रहा हैं एक क्रैट में कपड़ा भी रखा हुआ हैं एक दलिआ हैं वो पूरी खाली हैं एक ताकरी भी रखी हैं।

दो तीन लोग खड़े हैं पीछे एक चटाई भी बिछी हुई हैं एक पंछी उड़ रहा हैं नदी के पास नदी में थोड़ा कम पानी हैं एक टापू सा दिखाई दे--